ये कोई पोखरा है बहुत ही बड़ा पोखरा है।

बहुत ही बड़ा - बड़ा चट्टान है यहां ।

उम्म साइड में बहुत सारा पोस्टर लगा --

और एक व्यक्ति बाहर से फोटो खींच रहा है।

और लेटने के लिए एक बेड है।

बहुत ही पुराना कोलगेट का ये घर है यहाँ झण्डा फहराने के लिए एगो ई ए भी बना हुआ है।

और साइड में कछुआ पाला हुआ है।